इस होटल के अंदर बहुत ही सुंदर सुंदर लाइटें लगी हैं।

और यहां पर चेयर पर कुछ मास्टर बैठे नजर आ रहे हैं।

जो ब्लैक कलर के हैं और उन सोफा के तकियों का कलर रेड है इसमें काउंटर भी व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है।

इस अस्पताल के बिल्डिंग का कलर व्हाइट है इसमें विंडो में शीशे लगे हैं।

और इस दुकान में एक कंटा भी दिखाई दे रहा है कंप्यूटर का।

और कुछ व्यक्ति इस झरने के नीचे दिखाई दे रहे है और कुछ कारें भी खड़ी हैं।